एक भीम यू_पी_आई का क्यू_आर कोड भी सामने रखा हुआ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक हॉस्पिटल की है।

इस तस्वीर में जो यह फोटो है यह एक रात की फोटो है।

रंग बिरंगी बुक्स रखी हुई है बुक्स के बहुत सारे शेल्फ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक घर की है।

डांस करने वालों की है जो कि रोड के ऊपर खड़े हो कर डांस कर रहे है।

आइसक्रीम का बड़ा सा फ्रिज भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बहोत बड़े मैदान की है।

मॉइश्चराइजर रखे हुए है पेन रखे हुए है कॉपी रखे हुई है।